ये मंदिर के तीन गुम्बद दिख रहे है मंदिर का कलर ऑरेंज कलर का दिख रहा है वहा बहुत भीड़ दिख रही है एक ऑटो खड़ी है एक रिक्शा खड़ा है।

जिसमे कपड़े जमे हुए है निचे भी कुछ पिला सा बिछा हुआ है और यहां सभी प्रकार के कपड़े दिखाई दे रहे हैं।